मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

वो कुर्सी के ऊपर तोशक रखा हुआ है।

दुरी पर एक लंबा सा टावर भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर टाटा स्काई सिग्नल के दिखाई दे रहा है।

पास बहोत सारे स्कूटी और बाइक भी खड़ा है।

सामने में छोटा छोटा पत्थर भी बिखरा हुआ है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा--

सामने में टीना का छत भी दिखाई दे रहा है और टूकता भी दिखाई दे रहा है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

ई सारे कार्टून का डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग के अंदर बहोत सारे कुर्सियां और टेबल दिखाई दे रहा है।

सामने मे भी पानी बहता हुआ भी नजर आ रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग के अंदर कुर्सियां दिखाई दे रहा है।

कोने में कुर्सी पर एक आदमी भी बैठा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में चर्च का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ऊपर में छोटा छोटा सर भी लटकाया हुआ है और ट्यूबलाइट और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक स्कूटी पर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक लंबा सा भी लगा हुआ है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा पर दिखाई दे रहा है।

ये इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।

नदी पर नाव भी दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है।

बस्ता का रस्सी भी दिखाई दे रहा है सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।